अ मार फ़ूल के खेती ए कहुंक के दिखत हे एमा कई प्रकार के लाली लाली फुल मन ज्यादा हवय अउ दोती इहाँ ईंटा भट्ठा ए कहुंक दिखत हे।

जरना ऐ लाल दिखत हे एकदम अऊ ओती लाईट जलत हे रंग बेरंगी --